यहाँ पे जो बादल दिख रहे हैं उनके अलग-अलग कलर दिखाई दे रहे हैं और यह कोई जंगल एरिया है।

यहां पे कोई शादी समारोह है और यहां पर कुर्सियों पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं| यहां पे सामने और स्टेज बना हुआ है।

और यहाँ पे साइड में शटर वगैरा भी हैं और यहाँ पे ऊपर डोरियां लगी हुई हैं खंभे लगे हुए हैं और यहाँ पे सब ब्लैक ब्लैक कलर्स दिख रहे हैं।